बहुत सारी सीटिंग चेयर और टेबल --

तीन चेयर्स रखी गई है।

के साड़ी पहनी हुई।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक लो--

जहां पर डिजाइन के पेड़ काटे गए --

तो जैसा कि आप--

है और टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे है यहां पर--

जिसके आगे बहुत सारी--

बहोत सारे जिओ से रिलेटेड सामान मिलता है।